एक आदमी सादे रंग का फोन --

मुझे एक चित्र नजर आ रही है मानो ऐसा लग रहा है कि बोहोत पुराना ईस्थान है।

अंदर के कपड़े हरे और ऊपर के पीली और हल्की पत्ते दी हुई है और बहोत ही सुं --

मानो ऐसा दिख रहा है की रात का समय है।

ऐसा लग रहा है वो बहुत घनी जंगल है।

सामने एक पंखा भी है और थाली में चावल और --

एक चित्र नजर आ रही है। सामने एक ब्लू कलर की पोस्टर है।

एक आदमी सामने की तरफ गाड़ी को ठीक करते हुए नजर आ रहा है।

मुझे एक चित्र नजर आ रही है। सामने एक पोस्टर लगी हुई हैं जिसमें ए.टी.एम. लिखा हुआ है।

मुझे एक चित्र नजर आ रही है। सामने एक घर है।

मुझे एक चित्र दिख रही है सामने एक परदे की टी.वी. है और बहौत सारे सीट लगी हुई है।

और सामने एक लड़का और एक लड़की का गठबंधन हो रहा है और उनके गले में माला है।

मुझे एक चित्र दिख रही है सामने रोड है और एक गाड़ी दिख रही है।

उन्होंने सफेद रंग शर्ट पहन रखी है। सामने एक बिल्डिंग है। जिसके सामने की दीवार लाल और सफेद रंग की है।

और उसके सुँढ़ पे एक आदमी बैठा हुआ नजर आ रहा है। उसने आंखों में चश्मा और सफेद कलर के --